और सीढी लंबी सी बहोत सारे आदमी मंदिर के अंदर जा रहे हैं और उम नीचे पौ पौधा है।

और मैदान पर ऊं पीछे भी बहुत सारे झाड़ी दिख रही है किसी की बिल्डिंग में से ऊं टंकी दिख रही हैं।

ऊपर पंखा है जो बंद है काले कलर के हैं खिड़की खुली हुए है।

उसके बाद अह ए_सी भी है और कवर्ड भी है टी_वी भी चल रही है।

और ऊपर पंखा है जो दोनों बंद है चल नहीं रही है उसके बाद खिड़की है खिड़की मे पर्दे लगे हुए है।

और ब अ ब सामने में गाड़ी भी है और पैप भी लगे हरियाली भी दिख रही है।

सामने में डमरू सोपीज़ दिख रहे हैं ऊपर में लाइटें भी दिख रही है और साइड में सब देख रहे हैं।

बागान है बागान में लड़का खड़ा है पीछे बहुत सारे फूल हैं।

ब अ कुछ बाइक में बैठे हैं अ कुछ बाइक के साइड खड़े हैं।

एक आदमी लैपटॉप चला रहे हैं सामने में खिड़की दिख रही है और ऊपर पंखा भी दिख रहा है।

गाड़ी भी दिख रही है ऊपर मॉल है मॉल में नीचे पर कपड़े की दुकान है और ऊपर से ऊपर में भी मॉल दिख रही है।

पोल दिख रहे हैं सामने में रास्ते हैं और ईट से बना हुआ सामने गेट है उसके सामने भी--

उम्म अंधेरे जैसे दिख रहे हैं ऊपर बिल्डिंग है अह सब पीछे में--

एक बिल्डिंग है जो प्रगति हॉस्पिटल लिखा हुआ है इमरजेंसी इमरजेंसी है जो सीढ़ी के अंदर साइड में जा सकते हैं।

सीढ़ी की सीट अ बगल में एक बाइक खड़ी है और उसके ऊपर भी ग गमले है गमले में पोधै लगे हुए है और अंदर अंधेर दिख रहे हैं।

पीछे में दीवार के तरफ ए_ सी_ लगी हुई है टेबल है टेबल में कंप्यूटर रखा हुआ है साइड में लाइट का--